और यह न्यायालय बहुत ही बड़ा बनाया गया है | इसमें बहुत ही भीड़ लगी हुई रहती है। इस न्यायालय को --

यह एक जगह है इस जगह में बहुत सारे लोग योगा करने के लिए आते हैं।

इस घर के चारों ओर बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं और यहाँ बगल में और भी बहुत सारे घर बने हुए हैं।